और बोहोस एक बड़ा काउंटर रखा हुआ जिसपे बोहोत सारे डिब्बे रखे हुए --

एक आदमी पिंक कलर की शर्ट पेहने हुए ब्लू कलर की जीन्स पेहने हुए पास में दिख रहा है अस्तूरा हाथ में पकड़े हुए हैं।

और एक लेडी खड़ी हुई है स्काई ब्लू कलर का सूट पहने हुए जिसे ब्लैक कलर की और पर्स टांग रखी है पास में एक बच्चा खड़ा हुआ है पिंक कलर का टॉप पहने हुए।